यहाँ हरियर कलर के घर रंगल हइ खिड़की है एगो खिड़की के ऊपर पोस्टर टांगल हई फिर वहां ब्लू कलर के पोस्टर टंगल है पीले कलर के पोस्टर टंगल है।

इने सिलिंडर हैं उने फुल वाला सा है इने फुहलावना हैं ब्लू कलर का हरीयर कलर के उने उजर शर्ट पेहनले हैं ब्लू शर्ट पैंट पेहनले हैं उने अथी चार चक्का के पोस्टर हैं।

यहाँ बहुत सा हरा भरा थी घास है पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे वहाँ पे पियर वाला है।

यहाँ पे फ्लड का एजेंसी है एगो रेड कलर का टीशर्ट पहना हुआ है एक ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है ब्लैक कलर का